c और c ++ में nested if और switch statements के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
nested if statement और switch स्विच statement
का उपयोग कैसे करें
हम एक उदाहरण की मदद से यह करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ
ubuntu operating system version 1110
ubuntu पर gcc और g ++ compiler version 461
पहले हम एक उदाहरण से सीखेंगे कि nested if और switch statements कैसे लिखें
मैंने पहले ही program लिख लिया है
एक नजर डालते हैं इस program में हम integers की range की जांच करने के बारे में सीखेंगे
ध्यान दें कि हमारी file का name nestedif c है
अब मैं code समझाता हूँ
यह हमारी header header file है
यह हमारा main function है
main function के अन्दर हमने दो integer variables x और y घोषित किए हैं
यहाँ हम उपयोगकर्ताओं से 0 से 39 के बीच की एक संख्या प्रविष्ट करने को कहेंगे
हम input के रूप में y की value उपयोगकर्ता से लेते हैं
यह हमारी if condition है
यहाँ हम जांच करेंगे कि क्या y/10 = 0 है
यदि condition true है तो हम print करते हैं you have entered a number in the range of 09
यह हमारी elseif condition है
यहाँ हम जांच करते हैं कि क्या y/10 = 1 है
यदि condition true है तो
हम print करते हैं you have entered a number in the range of 1019
इस else if condition में हम जांच करते हैं कि क्या संख्या 2029 के range की है
और यहाँ हम देखेंगे कि संख्या 30 से 39 के range की है
यह हमारी else condition है
यदि उपर्युक्त सभी conditions false हों तो
हम print करते हैं number not in range
और यह हमारी return statement है
अब program को एक्जीक्यूट करें
कृपया अपने keyboard पर ctrl + alt + t कीज़ एक साथ दबाकर terminal window खोलें
एक्जीक्यूट करने के लिए gcc space nestedif c space hyphen o space nested type करें enter दबाएँ
dot slash nested type करें enter दबाएँ
हम देखते हैं enter a number between 0 to 39
मैं 12 प्रविष्ट करूंगा
आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है:you have entered the number in the range of 1019
दूसरी संख्या प्रविष्ट करें
पुनः एक्जीक्यूट करें up arrow की दबाएँ enter दबाएँ
मैं इस बार 5 प्रविष्ट करूँगा
हमें निम्नलिखित output प्राप्त होता है:
you have entered the number in the range of 09
conditional एक्जीक्यूशन अन्य तरीके से भी किया जा सकता है
switch statement का उपयोग करके
देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है
हम उसी program में switch का उपयोग करेंगे
मैंने program को पहले ही खोल लिया है
अपने text editor पर वापस जाएँ
मैंने पिछले program में इसकी व्याख्या की है
अतः मैं switch statements के बारे में बात करूंगा
यहाँ हम inputs विभाजित करेंगे यानि y by 10 और परिणाम variable x में संचित होता है
इसका अर्थ है कि भागफल x में संचित हो जाएगा
भागफल की मदद से हम संख्या की range की पहचान कर सकते हैं
यहाँ हम switch command को बताते हैं कि जांच किया जाने वाला variable x है
यह case 0 है यदि case 0 this है
तो हम print करते हैं you have entered the number in the range of 09
यदि case संतुष्ट है तो हम loop से बाहर निकलने के लिए break का उपयोग करते हैं
हमें हर बार loop को break करने की आवश्यकता होती है
यह इसलिए क्योंकि एक बार में केवल एक condition true हो सकती है
यह case 1 है case 1 का अर्थ है यदि x की value 1 है
हम print करते हैं you have entered a number in the range of 1019
यह case 2 है
यहाँ हम print करते हैं you have entered a number in the range of 2029
और यह case 3 है यहाँ हम जांच करते हैं कि क्या संख्या 3039 के range की है
यह default cases है default cases निर्दिष्ट करता है कि क्या किया जाना चाहिए यदि उपर्युक्त केसेस में कोई भी this नहीं
यहाँ हम print करते हैं number not in range
और यह हमारा return statement है
program को एक्जीक्यूट करें
terminal पर वापस आएँ
type करें : gcc space switch c spaceo space switch enter दबाएँ
type करें :/switch enter दबाएँ
0 से 39 के बीच की एक संख्या प्रविष्ट करें मैं 35 प्रविष्ट करूंगा
output इस प्रकार प्रदर्शित होता है you have entered the number in the range of 30 to 39
अब हम देखेंगे कि c ++ में programs को एक्जीक्यूट कैसे करें
text editor पर वापस आएँ
ध्यान दें कि हमारी file का name nestedif cpp है
यहाँ logic और कार्यान्वयन समान है
यहाँ कुछ बदलाव हैं जैसे :
header file stdio h के स्थान पर iostream है
यहाँ हमने printf और scanf के स्थान पर using statement
using namespace std
और cout और cin function को शामिल किया है
आप देख सकते हैं कि बाकी code हमारे c program के समान है
code को एक्जीक्यूट करें
terminal पर वापस आएँ
type करें : g ++ space nestedif cpp spaceo space nested1 enter दबाएँ
type करें:/nested1 enter दबाएँ
0 और 39 के बीच की एक संख्या प्रविष्ट करें मैं 40 प्रविष्ट करूंगा
output इस प्रकार प्रदर्शित होता है: number not in range
अब c ++ में switch program देखते हैं
text editor पर वापस आएँ
यहाँ भी logic और कार्यान्वयन समान हैं
आप देख सकते हैं कि header file iostream है
यहाँ using statement है
और हमने cout और cin function को बदल दिया है
बाकी code हमारे switch c program के समान है
एक्जीक्यूट करें terminal पर वापस आएँ
type करें: g ++ space switch cpp spaceo space switch1 enter दबाएँ
type करें/switch1 enter दबाएँ
0 से 39 के बीच की एक संख्या प्रविष्ट करें
मैं 25 प्रविष्ट करूंगा
output इस प्रकार प्रदर्शित होता है:
you have entered the number in the range of 2029
अब अपनी slides पर वापस जाते हैं
हम switch और nestedif statements के बीच तुलना करेंगे
switch statement का मूल्यांकन expression के परिणाम के आधार पर किया जाता है
netsedif statement केवल तभी क्रियान्वित होता है जब expression का परिणाम true हो
switch में हम variable के विभिन्न values को केसेस के रूप में उपयोग करते हैं
nestedif में हमें variable की प्रत्येक value के लिए conditional statement लिखना पड़ता है
switch statement केवल integer values की जांच कर सकता है
nested if integer और fractional दोनों values के लिए जांच कर सकता है
यह हमें इस tutorial की समाप्ति पर लाता है
सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने nested if statement सीखे
switch statement जैसेswitch x
और nestedif और switch statements के बीच अंतर के बारे में सीखा
एक नियतकार्य के रूप में क्या कर्मचारी की आयु 20 से 60 के बीच है यह जांच करने के लिए एक program लिखें
दिए गए link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
spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलाती है
उन्हें प्रमाणपत्र भी देते हैं जो online test pass करते हैं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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद